एयरपोर्ट के बाहर की ये फोटो है और एयरपोर्ट के सामने एक फील्ड है।

और ये दुकान जो है थोड़ी बहोत बड़ी है उसी के साथ मे एक और दुकान हैं जो जहाँ पे अलग-अलग तरीके के केसिट् और सीडीज रखी हुई है।

और ये एक रोड पे खड़ी हुई है उसके आगे पीछे और भी बहोत सी बसे हैं।

और ब्राउन रंग का इसपे कलर हुआ गा इसके आगे पेड़ है और आगे एक ओर एक गुरुद्वारा भी है।

और स्टेज पे लाइटनिंग है और काफ़ी बड़ा स्टेज लगा हुआ है कॉन्सर्ट की तरह--

पेड़ डिजाईन मे और ये एक लडकी बन रही है जिसके बाल उड़ रहे है।